लंबे लंबे पेड़ नजर आ रहे हैं और पीछे आसमान भी बिल्कुल साफ है।

सामने कुछ बांस डंडे भी नजर आ रहे हैं यहां बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

सामने कुछ बड़े बड़े ईंटा भी दिखाई दे रहे हैं।

एक मूर्ति बनाई गई है जिसका रंग काला है।

सामने एक लकड़ी से बहुत सारे पुरुष बहुत सारे महिलाओं का प्रतिरूप बनाया गया हैं।

सामने एक ब्लू कलर की दीवार भी है।

खंभे पर बहोत सारे तार भी लड़की हुई है।

इसके गेट पर एक लाल रंग का पर्दा लगा हुआ है यहां ऊपर उठने के लिए एक सीढ़ी भी लगी हुई है।

यहां सामने बहुत बड़े बड़े पेड़ भी है।

सामने एक आदमी दिख रहा है और आईने पर भी एक आदमी है।

यह एक साइकिल की दुकान है जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक साइकिल मौजूद है।

ऊपर बहुत सारे फूल की झालर बने हुए हैं।

पीछे का दीवार सफेद रंग से पेंट की गई है।

यहां बहुत सारी मछली रखी हुई है एक महिला मछली बेच रही है।

रोड पर अलग अलग प्रकार की स्ट्रीट है स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं।

यह एक पार्क की तस्वीर है जिसमें बहुत सारी छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

यह एक नर्सरी की तस्वीर है जिसके बाहर एक पोस्टर पर नेताजी सुभाष उद्यान लिखा हुआ है।

यहां एक महिला सफेद रंग की ड्रेस पहन कर अंदर घुस रही है।

टेबल फैन दिखाई दे रहा है ऊपर काले रंग की पंखा भी है।

यहां बैठने के लिए सोफा भी--

पीछे एक बिल्डिंग है जिस पर क्रीम कलर रंगा गया है।

क्या एक मैरिज हाल है जिसके बाहर हेवन प्लेस लिखा हुआ है।

अलग अलग प्रकार के बैलून लगाई गई है कुछ सफेद कुछ लाल तो कुछ पिंक दिखाई दे रही है।

एक बहोत बड़ा खंबा है जिसपे स्ट्रीट लाइट लगती हैं।

उन पर कुछ थालियां भी लगी हुई है थाली के ऊपर कुछ दीयां भी रखी हुई है।

पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है उसका रंग ग्रीन कलर से रंगा गया है इसके ऊपर ओ_पी_डी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ--

सामने एक पोस्टर दिख रही है जिसपर ब्लू हेवेन पैलेस लिखा हुआ है।